ये ट्रैक्टर है पॉपलेन है और ये हमारे तिरंगे इंडिया का शान है जो झंडा फहराया हुआ है ।

ये देख के लग रहा है मुजफ्फरपुर नगर निगम का ये बिल्डिंग है और ये नगर निगम का मतलब होता है की ये समाज सेव सेवा का ही है।

साइड में हीन होने की वजह से इसमें एक हनुमान जी का एक झंडी भी है और वह हाफ साइड बाउंड्री किया हुआ --

ये देख के लग रहा कि कोई रेस्टोरेंट या ढाबा टाइप का ही दिख रहा है और ये यहा पे ये ज्यादा तो कैंडिडेट नहीं है बट एक-दो कस्टमर हैं।

ये हमारे भारत माता का जो झंडा है शान है हम लोगो का तिंरंगा।

व कितना सुंदर तालाब है और इस तालाब के बगल में ये एक लोटस कमल का फूल भी है।

ये देख के ही बिल्डिंग देखने में ही लग रहा है की इतना अच्छा शानदार जो डेकोरेशन है ये फंक्शन के लिए ही है।

--और इस शहर में बहुत बड़ा ये बिल्डिंग है फ्लाइट है जो कि शोर--